यहां पर एक एक एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है आस पास छोटे छोटे और भी पौधे हैं।

यहां पर कुछ डंडे लगे हैं जो लोहे के हैं। नाव के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पास में एक छोटी सी नाव है।

बिल्डिंग के ऊपर शांतिनिकेतन शिव डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है।

तालाब के किनारे आस पास बहोत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

और पास में एक पाइप दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग में लगी है।

पास में बटली रखी हुई है यहां पे एक टॉर्च है यहां पे रोटी की--

बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई हैं पास में एक ढाबा है।